ओमे बाटे। दुनो ओर से अ गेड़ल बाटे। इंग्लिश में कुछ लिखल बा। हिन्दी में लिखल बाटे। दोकान ह।

किताब का दुकान ह नहीं पेपर के दुकान ह बडी़ एमे‌ पेपर बा घड़ी टॅंगल बा।

गा रोड ह रोड चारो और से रोड गईल बा बीचे में ई-रिक्शा बाटे उपर एगो आदमी बईठल बा। एगो ड्राइवर चलावता।

पिछवा अंधेरा हो गईल बा। बड़ी निक लगाता। एहिजा पूजा कर ता लोग बैठ के और बतख बा। आ पीछे औरी एगो मर्दाना खड़ा बा।

और गाडी ह एगो पोल बाटे दुन्नो ओर खड़ा बाडी सन औरी अंदर जाये के रास्ता बा बहुत भारी घर बाटे।